दिखाई दे रहा है रोड पर मोटरसाइकिल साइकिल स्कूटी ओ टेम्पो ऑटो-रिक्शा वाले दिखाई दे रहे हैं चलाते हुए और यहां पर एक दुर्गा --

रोड पर कई पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ पर छोटे बच्चे और कई पुरुष महिला दिखाई दे रही हैं। बच्चों ने एक बच्चे ने हाथ में पीले कलर की पॉलीथिन पकड़ी हुई है और ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ है।

उनके पास में एक सफेद कलर की जीप भी दिखाई दे रही है और ये सब कुछ लोग फोटो क्लिक करवा रहे है और यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा है और --

यहां पर दूल्हा दुल्हन की साइड देखता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक मोबाईल भी दिखाई दे रहा है।

और सफेद कलर की कैप लगा रखी है और यह व्यक्ति कार को धुलते हुए नजर आ रहा है। नीचे गीला-गीला सा दिखाई दे रहा है।

एक ऑरेंज कलर का गेट दिखाई दे रहा है। गेट के पास में कई व्यक्ति नजर आ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से कोई साइकिल से और कोई पैदल खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

बडा सा ग्राउन्ड है जिसमे बहोत सारी कुर्सी लगी हो कुर्सियों पर छोटे-छोटे बच्चे ओर कई महिलाए बैठती हुई नजर आ रही है ओर साइड मे दो तीन बच्चे खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। कुर्सियों का कलर सफेद कलर का है।

उनके पास मे एक बड़ा सा लंबा सा घर दिखाई दे रहा है और --

कुछ महिलाए दिखाई दे रही हैं। जिन्होंने अपने सिर पर साड़ी ढाक रखी हुई है और कुछ साइड मे भी व्यक्ति महिला दिखाई दे रही --